इस पिक्चर में दिखाया गया है कि पीछे बस खड़ी हुई है और यहां पे बैठने के लिआ--

इस पिक्चर में दिखाया गया है कि--

पीने के लिए एक पानी का कैंप रखा हुआ है।

इस पिक्चर में दिखाया गया है कि कि ये एक क्रशर मशीन है जो पहाड़ों में लगता है।

और क्रशर के बड़े बड़े ड़ाकू बने हुए है।

इस पिक्चर में दिखाया गया है साइड में एक टायर पड़ा हुआ है।

इस पिक्चर में दिखाया गया है कि आर_सी_एम कुछ--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

एक बंदा उसके अंदर निकाल रहा है और उसके पीछे घास पेड़ पौधे और दो मंजिल अलग हैं।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

इस पिक्चर में दिखाया गया है यहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक सामान लग रहा है जिसमें--

इस पिक्चर दिखाया गया है कि एक हाउस दिखाई दे रहा है जोकि बहुत ही दिखाई दे रहा हैं। साइड में उसके --